नदी जे नदी में जो है वो छोटे-छोटे नाव है ये ऐसी बढ़िया नदी इ जो है यह पांच किलोमीटर मे फैली नदी है इस नदी के ऊपर जो है गाँधी सेतु पुल भी बनी हुइ है जिस पुल के माध्यम से --